ए.टी.एम के बाहर बाइक साइकिल रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं ।

खुर्सियों पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ।

रखीदिखाई दे रही है यहाँ पे बीच में कुर्सी लकड़ी की दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक बड़ा सा समंदर दिखाई दे रहा है समंदर के लेफ्ट राईट में छोटी छोटी घांस लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे बाउंड्री भी दिखाई दे रही है यहाँ पे छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ।

इस इमेज में एक बड़ा सा समंदर दिखाई दे रहा है समंदर में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है समंदर के आस-पास --

इस इमेज में एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है तालाब में कुछ औरते दिखाई दे रही है।

सड़क पे कुछ गाड़ियाँ भी ख़ड़ी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ मक़ान भी दिखाई दे रहे हैं ।

दो घोड़े सफेद कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे माला चड़ी हुई दिखाई दे रही है ।

कुछ पोस्टर लगे हुई दिखाई दे रहा है यहाँ पे काउंटर दिखाई दे रहा है एक टेबल --